और यहाँ पर बहुत सारे गाड़ी हैं और बहुत सारे साइकिल भी है यह --

और उधर कुछ खाना बनाने वाले उधर बना रहे है और यहाँ पर --

इसके ऊपर देखने मे उ सुन --

यहाँ पर जिओ का कुछ है और यहाँ पर उर्दू में लिखा हुआ है हमे नहीं पता की क्या लिखा हुआ है |

यह आदमी अपने काउंटर के अंदर पैसा रख रहा है।

यहाँ पर एक बड़ा-सा मैदान है और यहाँ पर --

और महल भी है और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं और यह बहुत सुन्दर लग रहा है देखने में |

के गले में ईयरफोन सेट किया हुआ है और यह आदमी निचे बैठ --

यह कोई भगवान का मंदिर है यह मंदिर देखने में --

यहाँ पर एक बड़ा-सा दुकान है और इसमें बहुत सुन्दर एक घड़ी लगाया हुआ है।

और यह जगह बहुत सुन्दर लग रहा है इसके बगल-बगल बहुत सारे घास है।

बहुत ख़राब लगता है इसमें ईटा से बनाया हुआ है पलस्तर भी नहीं किया हुआ --

यहाँ पर एक घर बनाया हुआ है और यहाँ पर ईटा से भी बनाया हुआ है यह घर देखने मे बहुत सुन्दर लग रहा है ।

यहाँ पर एच.एच.एल. हॉस्पिटल है और यहाँ पर बहुत सारे मोटर साइकिल भी लगे है।

और इसके चारो और ग्राउंड है और इसके नीचे मे घास है ।

यह नज़ारा देखने में बहुत सुन्दर लगता है जैसे यहाँ पर मेला लगा हुआ है।

कपड़ा का दुकान है और यहाँ पर सीढ़ी भी लगा हुआ है यहां पर एक --

जींस पहन के है और इसके बगल में एक कला वाला टेबुल रखा हुआ है।

ट्रक सब चल रहे है यहाँ पर एक बड़ा-सा मकान बनाया हुआ है ।

हिरण सब को इसके अंदर ही रखते है ये लोग ।

अनपढ़ लग रहा है ये आदमी काला टी-शर्ट और इसके गले में चैन है।

यहाँ पर बहुत सारे धान हैं और यहाँ पर --

टेम्पू सब भी जा रहे हैं और एक आदमी स्कूटी से जा रहा है और लड़की --

केस काट रहा है अ बच्चा का ऊपर बरस और बहुत सारे चीज़ चुट्टा सब रखे हुए हैं।